जैसा की इस तस्वीर को देखकर--

यहाँ पर दो कुर्सियां--

यहाँ पर कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

कच्ची जमीन दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग नजर आ रही है।

जो की वाइट कलर से पुती हुई है और यहाँ पर एक कार भी खड़ी हुई है।

दिसंबर में सजाई जाती है।

यहाँ कुछ स्टील की रेलिंग --

इस तस्वीर में एक बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

एक दुकान की तस्वीर है।

एक व्यक्ति भी बैठा हुआ है।

यह तस्वीर देखकर समझ आ रहा है।

कि यह एक मैदान की तस्वीर है।

किताब भी दिखाई दे रही है।

बिल्ली बैठी भी है।